ये शॉप है माला वाला का शॉप है मां तारा फ्लावर डेकोरेट डेकोरेटर है सबका नाम --

और दूर में देखने के बाद आसमान का थोड़ा-थोड़ा है आसमान का थोडा-थोड़ा हरा-हरा जंगल भी है नीचे बीच में रोड है बड़ा-बड़ा पेड़ है।

यहाँ पे एक बकरी का बच्चा दिखाई दे रहा है साइड में रोड है उसके साइड में खेत है फसल लगा हुआ है शायद धान का खेत है ढट्ठा लगा हुआ बां --

गोल जैसा साइड मे जंगल है मे जाने का रास्ता है रास्ता भी आगे बंद है बीच में गैपइंग है सारा --

फुटबॉल बच्चा लोग खेल रहा है। मकान सब बहुत आगे में है। बीच में कुछ जमीन में छिला हुआ भी है।